कुछ टायर्स भी रखे हुए है।

और कांच लगा हुआ हैं।

मुख्य द्वार पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ--

बेंच पर बैठे हुए बहोत सारे बच्चे दिख रहे--

इस कमरे में एक प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है।

एक तरफ तार पे कपड़े सूख रहे हैं और कुछ कार भी दिख रही है।

मुझे एक फैक्ट्री भी दिख रही है।

बारामासी फूल का पौधा भी लगा हुआ है।

और कुछ ऑटो और ई रिक्शा भी दिखाई दे रही है।

बिजली के खंभे लगे हुए हैं।